आयुष फ्रेश वेजीटेबल्स फ्रूट लगा हुआ है। हमारे यहाँ पर तेजी काजू सब्जीवा पल मक्खन पनीर सफल मटर उचित रेट पर मिलती।

मिट्ठी पड़ी हुई है और घास वगैरा यहाँ लगी हई है और सबकुच्छ यहा पे लगा हुआ है काफी सारे चिजे यहा पे लगी हुई है और बिल्डिंग पडी हुई--

दो फ्लेटफॉर्म है एक से दो फ्लेटफॉर्म है बहोत सारी फ्लेटफॉर्म भी है और आ-वो पड़ी हुई मतलब क्या कहता है उपर कुछ पड़ा हुआ--